एक बड़ा सा मॉल है उस मॉल मे अलग-अलग मॉडल वाला --

एक बड़ा सा मॉल है जो इस मॉल मे दिखाया जाता है बहुत सारा आदमी है आदमी सब चाय पी रहा है और नाश्ता भी मिल रहा है।

यहाँ पर बहुत बड़ा दुकान है जो दुकान में अंदर भी आदमी है बहुत सारा और बाहर भी --

और कुछ नीचे भी ह निचे में भी है बैलून सब और एक आदमी बैठे हुए है।

नदी है और बड़ा-बड़ा पत्थर है।

बड़ा ही पत्थर में बैठा हुआ है जो नदी देख रहा है।

यहाँ पर एक बड़ा ही भगवान है।

यहाँ पर बहुत सारा फूल है।